फोटो में हमें यहां पर एक--

यहां पेड़ दिखाई दे रही है।

सुरेश ऑटो इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स और परमात्मा एक ट्रैक्टर गैरेज माड़गी लिखा है।

यहाँ पर कुछ लेबल दिख रहे है।

इस फोटो में हमें यहां पर अ टेंट बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में हमें यहां पर एक सफेद कलर की फोर व्हीलर दिखाई दे रही है।